इस चित्र में एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है पंखा दिख रहा है फूग्गे दिख रहा है।

पेड़ दिखरा है पटरी दिखरा है आसमान दिखरा है मीनारा दिखरा है।

हार फूल दिख रहा है बोरी दिख रहा है लोग दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे दुकान दिख रहा है किताबें दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे एक बिल्डिंग दिख रहा है आसमान दिख रहा है मोटरसाइकिल दिख रहा है रोड दिख रहा है।

दीवार दिख रहा है रोड दिख रहा है।

गेट दिख रहा है बोर्ड दिख रहा है लाइट दिख रहा है।

गेट दिख रहा है टीवी दिख रहा है फर्श दिख रहा है।

मान दिख रहा है बिल्डिंग दिख रहा है लोग दिख रहा है साइकिल दिख रहा है बिल्डिंग दिख रहा है --

इस चित्र मे मुझे मंदिर दिख रहा है रोड दिख रहा है पेड़ दिख रहा है झंडा दिख रहा है लॉरी दिख रहा है रेलिंग दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे गाड़ी दिख रहा है फोटो दिख रहा है।

इतनी सारी चीजें दिख रहा है।

हिस चित्र में मुझे मूर्ति दिख रहा है परदे दिख रहा है कारपेट दिख रहा है।

लोग दिख रहे हैं जमीन दिख रही है आसमान दिख रहा है।